और एक खम्भा-उम्बा लगा हुआ है आगे-पीछे पेड़वा हरा-भरा है पिलर है --

सड़क है सड़क पे ढेर सारा गाड़ी लगा हुआ है। एक --

पत्ता लेके सब सेल्फी घीचा रहा है इधर बच्चा है बच्चा वह मास्क लगा रहा है।

और इधर सीढ़ी वगेरह लगते है और लोहा के ग्रिल्स है और ये --

और केला भी है और सेब भी है और हम्म पीला कलर का दिवाल भी है अंदर ढ़ेर सारा समान है पूरा भरा हुआ है आम मोबाईल लेके पैसा गिन रहा है। आदमी खाली --